और एक डी_पी रखा हुआ है एक--

यह एक रिक्शा स्टैंड है यहां।

ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है।

एक व्हाइट कलर का शीशे वाली मेज रखी हुई है जिस--

मार्केट के सामने से एक बाइक गुजर रही है जिस--

मार्केट में एक विवेकानंद सेंट लाइब्रेरी सेंट कोचिंग सेंटर है।

यहां पर डॉक्टर विशाल मौजूद है जो--

लेडीज डॉक्टर ने मास्क लगाया हुआ है।

का एक बहोत अंदर बैनर लगा हुआ है इसके--

और यहां पर सामने एक लंबी ट्यूबलाइट लगी हुई है।

हम्म दीवारों पर पी_वी_सी लगी हुई है।

इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर ब सीन भी बनी हुई है।

ये एक हॉप ट्रेट का ऑफिस है इसमें--